दुकान के ऊपर बोर्ड लगे हुए नजर आ रहे हैं।

दुकान के बाहर बाल्टी रखी हुई दिख रही है।

इस फोटो में रोड पे लगे हुए एक वाइट कलर की कार दिख रही है।

यह फोटो एक नदी का है।

इस फोटो में बड़े बड़े चट्टान दिख रहे है।

नदी के पीछे पहाड़ भी दिख रहे हैं और कुछ आदमी भी नजर आ रहे हैं।

इस दुकान में रैक पर कुत्तों का खाने वाला सामान दिख रहा है और कुत्तों का बेल्ट दिख रहा है।

यह फोटो एक रेस्टोरेंट का है।

रेस्टोरेंट के बगल में टावर दिख रहे हैं और बाहर गार्डन भी दिख रहा है।

ए_सी भी लगा हुआ दिख रहा है और पीछे टाइल्स भी दिख रहे हैं।

यह फोटो एक चपल दुकान का फोटो हैं।

के बगल में एक शीशा दिख रहा है नीचे एक बेंच लगा हुआ है और उसके बगल में पानी का जार दिख रहा है।

चेयर के सामने टेबल पे दो कंप्यूटर रखा हुआ दिख रहा है।

ऊपर बलफ़ जलते हुए नजर आ रहे हैं।

बल्ब के बगल में एक घड़ी भी लगा हुआ दिख रहा है।

ये फोटो एक रेस्टोरेंट का फोटो है।

टेबल के बगल में छः सात कुर्सियां लगी हुई दिख रही हैं।

मिरर का कलर व्हाइट एंड ब्लैक है।

इस फोटो में रैक पे रखे हुए बहुत सारी दवाइयां नजर आ रही है।

यह फोटो एक मैरेज हॉल का फोटो है मैरेज हॉल के बाहर एक सिक्युरिटी गार्ड दिख रहा है।

इस फोटो में दो आदमी नजर आ रहे हैं।

घर के पीछे एक बड़ा पहाड़ नजर आ रहा है और बहोत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

लाइट के बगल में एक बोर्ड दिख रहा है जिस पे इंडियन ऑयल हिंदी मे और इंडियन ऑयल इंग्लिश मे लिखा हुआ नजर आ रहा है।

यह एक मार्केट का फोटो है।

ये फोटो एक जिम का फोटो है।

बहोत सारे पेड़ पौधे भी दिख रहे है घर का कलर लाल है।